और पानी टंकी दिख रहा है नीचे कुछ कपड़े रखे हुए हैं बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं।

हरा भरा पेड़ दिख रहे हैं। ऊपर में व्हाइट व्हाइट लाइट लगी हुई है और पीले और रेड रंग से पेंट किया हुआ है।

इस चित्र में बहुत सारे बॉक्स दिख रहे हैं और एक आदमी बैठे हुए हैं कुर्सी पर बहुत सारे कुर्सियाँ भी दिख रही है।

पर में बहुत सारे मशीन रखे हुए हैं और बहुत सारे भका भिकि लाइट लाइट जल रही है।

एक बहोत बड़ा एल_सी_डी लगा हुआ है ऊपर में बहोत ही अच्छी तरीके से सजाया हुआ है।

चित्र में एक मॉल दिख रहा है जिसमें मइयां बाबू का खिलौना रखा हुआ है और उसको कपड़ा पहनाया हुआ है।

और ऊपर में अह कुछ लगाया हुआ है बहुत ही बड़ा बड़ा घर दिख रहा है।

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सीढ़ी दिख रहा है लाल रंग से पेंट किया हुआ है उपर में एस_बी_आई का दो पोस्टर दिख रहे है।

एक का इधर पैर दिख रहा है और एक लेडिस भी जा रही है बहुत सारे बाइक लगी हुई है और हरा भरा पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

एक लेडीज उधर से भी आ रही है और कुछ पुलिस थाने का पोस्टर लगा हुआ है।

लाइन जल रहा है और बहुत सारे लोग खड़े हैं एक रथ जा रहा है जिसमें कोई है और बहुत सारे आदमी लोग हैं जो पीछे डांस कर रहे हैं।

चित्र में बहुत ही हरा भरा पेड़ है और बहुत सारे पक्कल दिख रहे हैं और पानी जा रहा है और एक जगह जमा हुआ है।

चित्र में एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे बच्चे पहने बैठे हुए हैं और बैग भी रखा हुआ है बहुत सारे टेबल और कुर्सियां हैं।

इस चित्र में एक दुकान है जिसमें बहुत सारे जग रखे हुए हैं और लोटा बहुत सारा दिख रहे हैं जो पीतल का भी है।

बहुत सारे खिड़कियां भी दिख रही है और व्हाइट व्हाइट रंग का बहुत सारा बोल जल रहा है।

देखिए सभी रैक में सजा के रखे हुवे हैं और व्हाइटनर दिख रहा गोंद भी दिख रहा है।

बहुत सारे बच्चे और लेडिज और जेंट्स भी हैं नीचे इंटा से लगा सब सजाया हुआ है।

इस चित्र मे बहुत ही बड़ा घर दिख रहा है और बहुत सारे घास फूस लगे हुए है और कुछ फूल लगे हुई है।